जैसा कि इस पिक्चर में हम देख रहे है कि एक ए.टी.एम. है और ए.टी.एम. के बाहर एक साइकिल लगी है और --

अंदर जाने के लिए काफी सुंदर दरवाजा भी है जो काफी सुंदर है ।

और ये पंडाल काफी सुंदर है और इसके ऊपर लाइटिंग जो की कलरफुल की गई है । ब्लू --

ते है हम इंस्टीट्यूट का नाम स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और इस --

जैसा कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे है एक बेहद ही दो मंजिले ख़ूबसूरत सा एक --

अच्छे से काम कर रहा है अपना टाइल लगाने का मशीन चला रहा है । और --

उनके पीछे दो ऑटो रिक्शा हैं और उसके पीछे सब अपने कार्य में लगे हैं खेलने का कार्य कर रहे ।